वहां एक पेट्रोल पंप है जिसके बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है तथा ट्रक खड़ा हुआ है।

सोया हुआ है दूसरी ओर बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हैं।